खेत में बोहोत सारे भुट्टे भी है भुट्टे को जलाया गया है जलाए हुए--

एक मॉल का है इसमें फोनपे का प्रूफ भी लगा हुआ है इसमें आकाश--